उसके पीछे नीले कलर की दिवार है सामने कुर्सी रखी है और तिरंगे के कलर की बलुन्स लगे हुए हैं। यह लड़की डांस कर रही है लेकिन रो भी रही है।

और पीछे यहाँ पर फ्लावर्स लगे हुए हैं जो फ्लॉवर से डेकोरेशन की गयी है। यह शादी हॉल की पिक है|

यह एक मैदान है। जिसके सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है। जिसमें भागलपुर मल्टीप्लाइड लिखा है। यहाँ पे एक पोस्टर लगा है जहाँ पे यहाँ के नेताओं की फोटो लगी हुई है और सामने एक लड़का --

यह एक बैंक है जहां पर लोग लोन और पैसे निकलवाने आये है।

यहा पे तीन चार चार लडकिय चटाई डालके बेठी हुई हे जो की वयायाम कर रही हे और उसके सामने एक ब्लैक कलर की लड़की बैठी है वो इनको सीखा रही है।

यह एक सब्जी की दुकान है जहाँ पे पत्तागोभी रखी हुइ है और केलें लटके हुए हैं और यहाँ फल फ्रूट भी हैं।